खिड़की है ऊपर आसमान दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का और यहाँ रोड है और येल्लो और ब्लैक कलर की बॉर्डर दिख रही है कुछ खम्बे दिख रहे है कुछ वरक्ष --

गोल्ड लिखा हुआ है चौबीस कैरेट गोल्ड लिखा हुआ हैं और बोहोत सारी ही हैं और गोल्डन ही कलर दिख है इसमें --

एक ने-ऐ-ऐ-ऐ आसमानी से कलर की शर्ट और रेड कलर की लुंगी पहनी हुई है और पानी है बहुत सारा जैसे समुद्र में चला रहे हो बहुत सारा पानी-पानी दिख रहा है।

कुछ लगे हुई है चिपकी हुई है दिवार पर उन पर लिखा रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है।

इस पिक्चर में एक गे लोहे का वो लगा हुआ है बैनर सा उसपे व्यायामशाला ओपन गेम लिखा हुआ है यहां पर एक --

यह एक जॉगिंग की मशीन रखी हुई है यहां पर जोगिंग करने की और यह जोटिंग करने की जगह है जहां पर तो --